इस फोटो में पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में ट्रक दिखाई--

येह फोटो पहाड़ की है।

यह है फोटो कंस्ट्रक्शन वर्क --

कागज की आकृतियां दिखाई दे रही--

यह फोटो हॉस्पिटल की है।

इस फोटो में मशीनें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में सी_एफ_एल दिख रहा है।

इस फोटो में खिड़कियां दिख रही है।

इस फोटो में पंखा लगा हुआ है।

इस फोटो में स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।